घास दिखाई दे रही है छोटे-छोटे झाड़ दिखाई दे रहे हैं कचरा दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

और बोहोत सारे कचरे भी दिखाई दे रहे हैं सामने पानी दिखाई दे रही है फूल दिखाई दे रही है।

मेज में एक बहुत ही बड़ा बाइक अ बाइक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में दो बाल्टी दिखाई दे रही है टुकड़े-टुकड़े करके पेपर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं चल बाइक --

इमेज में एक ट्रेन दिखाई दे रही है। ऊपर ट्रेन को करंट सप्लाई करने वाले खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में बहुत सारे मक्के दिखाई दे रही हैं मक्के के छिलके भी दिखाई दे रही हैं।

कबर्ड दिखाई दे रहा है सोफे का कलर वो वुडेन और पीकॉक कलर की है दीवारें दिखाई दे रही है।